सबने गले में ढोल की रस्सी ढाला हुआ है।

इंटा सीमेंट बाहर पर रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक कमरा है जिसमें एक बिस्तर रखा हुआ है ब्राउन कलर का।

इस कमरे में एक इंसान भी खड़ा है।

और पत्थरों के बीच से पानी झरने की झरने आ रहे हैं।

रंग बिरंगा ग्रीन ब्लू ब्लैक व्हाइट ग्रीन लाइट ग्रीन कलर स्कूटी दिख रहा है।

ये कोई कॉलेज नहीं तो ऑफिस का एंट्रेंस दिखाई दे रहा है।

राइट साइड में रेड कलर का पेंट भी है।

इसपर फूल पिंक कलर के व्हेट व्हाइट कलर के ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर ऊपर वाइट दिया हुआ है और नीचे वाइट कलर के काफी सारे पोर्ट्स फ्लावर पॉटस दिए गए हैं।

जो कैंडल रखा गया है वो एक मिट्टी से बनाया हुआ छोटा सा पॉट है।

आसमान काफी साफ दिख रहा है और लोग इस पर बैठकर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं।

ग्राउंड के बाहर लोग बैठे हुए हैं।

ये फोटो कोई इंसान और कार की है।

ये कोई हॉल का फोटो है।